यहां पे कुछ लिखा भी हुआ है वाइट वाले बोर्ड पर।

गार्डन का सीन नजर आ रहा है जिसका नाम है वर्धमान सनसेट पार्क ।

एक ब्लू कलर के गेट भी नजर आ रहे हैं।

ये एक जिम का सीन नजर आ रहा है।

और एक ब्लू कलर की गोल वाली स्लाइड भी नजर--

उनके पास बहुत सारा सामान नजर आ रहा है।

किचन का भी सामान नजर आ रहा है आंटी बैठी हुई हैं अंकल खड़े हुए हैं।

वाइपर भी नजर आ रहा है।

और ग्रीन कलर की एक सब्जी भी रखी हुई है।

एक बच्चा ऊपर आ रहा है।

यहां पे अलग-अलग कलर के बलून भी नजर आ रहे हैं।

एक लड़का बाहर चेयर पे बैठा हुआ है।

उसके ऊपर टेंट लगा हुआ है एक--

ये बाहर बहोत सारे नकली पुतले खड़े हुए हैं उसके ऊपर--

फैन भी नजर आ रहा है।

बैग भी नजर आ रहा है।

एक पेड़ भी नजर आ रहा है इसका बहुत अच्छा कलर है।

यहां पे एक पूल भी दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत हरियाली नजर आ रही है।

आईना भी लगा हुआ है पानी पीने के लिए।